दुकानदार की एक बहुत ही सुंदर--

ये एक मंदिर का चित्र है जिसमें भगवान बै विराजमान हैं और यहां पर ऑरेंज --

वो माइक्रोस्कोप में कुछ न कुछ देख रही है।